बहुत अच्छा लग रहा है सेमिनार का सजावट भी बहुत अच्छा किया हुआ है लोग बैठे हुए हैं आनंद ले रहे हैं।